यह एक कॉपी किताब के दुकान का दृश्य है।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

और ऊपर में बहोत सारा बिजली का तार भी दिखाई दे रहा है।

किनारे में ही स्टील का रेलिंग भी दिखाई दे रहा है।

एक भूरे रंग का टेबल भी है और तीन ड्रम भी दिखाई दे रहा है ।

रोड के किनारे में एक मंदिर है।

दीवार में दो पंख लगा हुआ है जोकि उजले रंग का है।

यह एक रूम का दृश्य है जिसके दीवार का रंग गुलाबी है।

यह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पेंटिंग का दृश्य है।

इसमें बहोत सारे व्यक्ति जो उजले रंग के कपड़े पहने हुए हैं और एक महिला हैं जो इंस्ट्रुमेंट बजा रही है।

यहां पर कुछ मोटरसाइकिल भी खड़ी है और बहुत सारे लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।